ये कोई इंस्टिट्यूट हैविध्या इंस्टिट्यूट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है ।

ये एक कॉलोनी है जहाँ पे ढेर सारे बिल्डिंग और फ्लैट्स दिख रहे है घर दिख रहा है और आसमान भी दिख रहा है यहाँ पे ढेर सारे और टावर भी दिख रहे है

यह एक छोले चाट की दुकान है फुल्के की यहाँ पे फुल्के दिख रहे है और पीले मटर के छोले दिख रहे है और एक व्यक्ति का हाथ है जिन्होंने अपने हाथ में छोले लिया हुआ है।

अहः यहाँ पे ढेर सारा पानी दिख रहा है और कुछ लोग भी दिख रहे है।

ये एक आदमी कपडा प्रेस करते हुए दिख रहा है आयरन करते हुए अहः ब्लू कलर की टेबल में--

यह एक रोड है और रूट कितने रूट में कई सारी गाड़ियां आई हुई दिख रही है जहां पर पैदल भी लोग खड़े हैं और स्कूटी से बाइक से आना-जाना कर रहे हैं यहां पर लाइट्स भी लगी हुई है।

ये एक पार्क है जहां पे अ एम स्लाइडिंग साइड लगी हुई है जहा पे बच्चे स्लाइडिंग कर रहे है और एक सीढ़ी लगी हुई ग्रीन कलर की और रेड कलर का स्लाइडिंग है।

हा बहुत सारे पौधे हैं और कुछ लड़के बैठे हुए हैं।

ये एक गुफा जेसा नज़र आ रहा हैं जिसके आसपास ढेर सारे जगल झाड़ियां नजर आ रही हैंसुखी और हरी भरी --